ये लाल कलर की बिल्डिंग बनी हुई है और बहार कुछ साइकिल खड़ी हुई दिख रही है।

और एक बच्च्पो के लिए मिकी माउस का झुला भी लगा हुआ हे ।

जिसके अन्दर पेट्रोल भरा हुआ है जो एक पेट्रोल टैंक पर खाली हो रहा है।

ये काफी बड़ा ट्रक है जो की नीला और सफ़ेद कलर का दिख रहा है ।

आहाडियो संगर्ष स्वागत है जहा पर काफी सारे लोग खड़े हुए है ।

पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का और कुछ लोग अन्दर जा रहे है ।

ये एक छोटा सा रूम जेसा दिखाई दे रहा हे जिसमे एक गणेश जी की मूर्ति एक कोने में रखी हुई हे।

जिसके बहार कुछ बच्चे स्कूल में जाते हुए दिख रहे हे ।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा हे ।

और पार्क में कुछ बेठने के लिए दो टेबल ए भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ के उपर छोटे छोटे फूल भी लगे नज़र आ रहे है ।

लेते है दिखाई दे रहा हे पास में कुछ और भी दुकाने हे ।

कुछ सामान जैसे टिसू और नमक मसाले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने भी काउंटर बना हुआ हैं।

इस पिचर में एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा हे स्टेज पर काफी सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हे।

ओर सामने एक काफी अच्छी स्कूल के रूम भी बने हुए है।

दोनो ही आदमियों ने सर पर कैप लगाई हुई हे ।

इस पिचर में काफी बड़ा गुरुनानक स्कूल दिखाई दे रहा हें जोखी काफी चोड़ा और सुन्दर नजर आ रहा हें--

बाहर कुछ बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हें और गेट के पास ही दो लडकिया खड़ी हुई दिख रही हें।

स्कुल के बाहर कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई हे और पास में कुछ पेड़ पोधे लगे हुए हे।

ये एक काफी सुन्दर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे पेड़ पोधे लगे हुए है।

और बॉन्डरी बनी हुई है जो की पत्थरो की है और काफी सारे नारियल के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और बहार कुछ छोटी छोटी घासे भी लगी दिखाई दे रही है ।

और रात का टाइम हो रहा है सामने काफ दो बड़े बड़े काफी--

ये एक बहोत बड़ी सैलून की दुकान दिखाई दे रही है जोकि न्यू बनी हुई है।

पास ही में एक कच्चा रास्ता बना हुआ दिख रहा हे ।

बच्चे बेठे हुए हैं सामने लोहे की टेबले लगी हुई हे ।

ये एक केराला होटल है जहा पर वेज और नॉन वेज दोनों ही चीज़े मिलती है।

जिस पर काफी सारी खाने पिने की चीजों के चित्र बने दिखाई दे रहे है ।

यहां पर काफी सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक आर_के कॉफ़ी स्टाल है जहा पर कॉफ़ी और चाय मिल रही है।

एक आदमी खड़े होकर चाय पिते हुए दिखाई दे रहा है दो आदमी टेबल पर बेठे हुए है।

ये एक ज्वेलरी की शोप हे जहा पर काफी सारी सोने की ज्वेलरी रखी हुई दिखाई दे रही हे।

जिस पर एक गद्दा बिछ्हा है और ब्लू कलर की बेड शीट भी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक बोहोत बड़ा खेल का मैदान दिखाई दे रह है जो की एक पार्क की तरह लग रहा है।

इस पिचर में इलेक्ट्रोनिक सामान की एक शॉप दिखाई दे रही हे जहा पर कुछ बल्प चेयर तार--

जिस पर काफी सारी बन्नी रखी हुयी हे एक सामने तराजू भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

और बेठने के लिए कुछ टेबले भी लगी हुई दिखाई दे र्रही हे।

और सामने की तरफ एक दूसरी लाल और पिली रंग की फिसल पट्टी दिखाई दे रही है।